और ठीक रोड के ऊपर एक वायर गई हुई है। रोड़ के दाहिनी तरफ एक कांच है।

ठीक उसके पीछे एक पोस्टर हैं जिसका कलर है पिंक । दाहिने तरफ बलून लगे हुए हैं।

जंगल बहुत ही हरियाली सा है इसमें बहुत सारे छोटे-बड़े पेड़ पौधे है।

कलर येलो में है। के ऊपर एक गोल सा बनाय़ा हुआ हैं जिसकां डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है जिसका कलर एस् कलर है।

ठीक पीछे कुछ घर हैं। घर के कलर पिंक कलर हैं। दुकान में एक शटर है। उसका कलर छाय कलर का है।

जो रस्था का कलर र है मट्टी कलर है और पास में एक छोटी सी नदी लग रही है।